इस तस्वीर में आप एक बहुत पुरानी इमारत को देख सकते हैं तथा एक युवक वहां--

इस तस्वीर में बहुत सारे लकड़ी के बने हुए समान को देखा जा सकता है और ऊपर में काराकाट से इस --

और यहाँ कच्ची सड़क है। कुछ युवक इस गेट के अंदर से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे है।

इनके आस-पास बहुत सारे माम के पेड़ भी लगे हुए हैं तथा कुछ पपीते के पेड़ भी देखे जा सकते हैं।

इस तस्वीर में एक जिम को दर्शाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स रखे गए है।